जिस पे बोर्ड भोजन राजा का ढाबा लिखा हुआ है और यहां खाने पीने की कुछ चीजे सभी चीजे मिलती हैं।

जो की रेड कलर की है और इसको व्हील के पीछे एक पत्थर रखा गया है।

और यहां पे ऊपर मोटर एस_आर मोटर का बोर्ड लगा हुआ है और यहां पे ग्रीन लाइट जल रही है।

और उसके हाथ में घड़ी लगी हुई है ये इस गुफे के अंदर जा रहा है।

अं ग्रीनरी नज़र आ रही है और अम् पानी के ऊपर भी वो ग्रीन कलर की घास नज़र आ रही है।

और इनमें से एक फ्लैग भी नजर आ रहा है वोडाफोन का बोर्ड नजर आ रहा है।